यहां पर बहोत सारी कार है। यहां पर पुलिस भी है।

यहां पर ब्लैक कलर की चेयर है।

यहां पर बहुत सारी हरियाली हैं।

बड़ी शॉप नज़र आ रही है।

बहोत सारी कार नजर आ रही है।

नर्सरी तो दसवीं तक ही ये स्कूल है।

इस इमेज में बहुत सारे वर्कर नज़र आ रहे हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा कंडा लगा हुआ है।

बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क जैसा बनाया गया है।

बहुत बड़ी कंपाइ नजर आ रही है।

बहोत बड़ा स्टेशन जैसा कुछ नजर आ रहा है यहां पर--

बहोत बड़ी बिल्डिंग बन रही है।

यहां पर इलाहाबाद का बैंक है यहां पर दो व्यक्ति बैठे हैं यहां पर दो साइकिलें हैं यहां--

इस इमेज़ में एक बहोत बड़े--

बहुत सारे टेबल और चेयर हैं।

इस इमेज़ में चर्च के कुछ लोग नजर आ रहे हैं सभी ने--

ब्लू कलर का गोल चक्कर नजर आ रहा--